जिसमें की बिस्किट बनाई जाती होगी या तो चॉकलेट बनाई जाती होगी या कुछ भी चीज बनाई जाती होगी।

बहुत सारी लड़किए लड़के यहां परफॉर्म कर रहे हैं एक टीचर है कोई टीचर है दो-तीन टीचर है।

इसमें कि लाइटनिंग वगैरह लाइटनिंग बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम कर रहे हैं।

के लिए आते हैं तरह-तरह की मछलियां पाई जा रही है रहू है हिलसा है--

और बैग है अच्छी खासी वॉल है पेंटिंग की--

कई गाड़ियां लगी हुई है अपने-अपने गाड़ी अपने-अपने में गाड़ी में।

किसी कॉलेज की या किसी इंस्टीट्यूशन की फ्रेशर पार्टी है।